सड़क दिखाई दे रही है गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं एक सफ़ेद कलर की कार दिखाई दे रही है ।

एक दिवार पे ब्राउन कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है। पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

शटर दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की --